इससे ऊपर जाने की व्यवस्था है दीवारों पर खाने से जुड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

इमेज में एक आदमी ब्रेक डांसिंग की मुद्रा में है।

यहां पर सर्फ शैंपू शॉप्स और ऑयल एक्स्ट्रा दिख रहा है।

यह एक फूलों की दुकान है जहां पर फूलों की मालाएं बनाई --

और बेची जाती हैं अलग अलग रंगों के फूल मालाएं दिख रही हैं खासकर सफेद लाल और पीले फूलों की

बीच में एक हरा भरा पेड़ खड़ा हैं जो सूरज की रोशनी में चमक रहा हैं।

यह एक बेकरी की इमेज है जिसका नाम पटेल बेकरी है बेकरी का साइन बोर्ड ब्राउन --

और व्हाइट रंग का है इसके कांच के दरवाजे और खिड़कियों--

बेकरी के बाहर प्योअर वेज लिखा हुआ है दुकान के बाहर कई रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं शायद ग्राहक या कर्मचारी हो।

खिड़कियों पर हरे रंग के परदे लगे हुए हैं छत पर एक पंखा लगा हुआ है।

डॉक्टर के पास अपनी बारी का इंतजार कर रहें टेबल पर दवाइयां रखी हुई हैं।

कुछ लोग खड़े हैं और कुछ बैठे हैं सभी लोग सिंपल दिख रहे--

दीवार पर एक कैलेंडर टंगा हुआ है अंदर ग्राहक और --

कर्मचारी बात कर रहे हैं छत पर फ़लोरो सेंट लाइट्स लगी है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिकल शॉप है जिसका नाम ओम इलेक्ट्रानिकलस है।

दाई ओर एक कोल्ड ड्रिंक्स और आईसक्रिम का फ्रिजर हैं।

यह एक हॉस्पिटल हो सकता है कुर्सियां मरीजों के बैठने के लिए है।

हॉस्पिटल मे मदद के लिए कर्मचारी मौजूद रहे ते है।

लकड़ी की रेलिंग है बिल्डिंग के सामने एक दरवाजा है।

संपर्क नंबर एट टू थ्री एट सिक्स सिक्स एट वन फाइव वन दिया गया है।

एक नीले रंग का बोर्ड है जिस पर अलग अलग व्यंजनों के नाम और उनके दाम लिखे गए हैं।

दास से सओ के बीच है यह ठेला खुली सड़क पर रखा हुआ है।

एम साइट में पेड़ और हरियाली है यह एक शांत और प्राकृतिक जगह है।

तंबू छोटे और आरामदायक दिखते हैं कैंप साइड में जमीन घास --

यहां लोग आराम करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए मिलते हैं।

एक खुली बिल्डिंग है शायद एक मंडप या आश्रम जिसमें लाल टाइल की छत है।

बिल्डिंग पेड़ो और हरियालो से घिरी हुई है जिसमे एक नारियल का पेड़ भी शामिल है।

बिल्डिंग के सामने एक घुमावट दार सड़क है जो शायद प्रवेश द्वार की ओर जाती हैं।

चारों ओर खुला क्षेत्र है। इससे यह और आकर्षक लग रहा है। मंदिर के आसपास --

प्रवेश द्वार के पीछे एक दीवार पर बनी तस्वीर है।

यह एक बड्डे पार्टी की पार्टी लग रही है टेबल पर केक और खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं।

यहां एक इंडिया पोस्ट का ए_टी_एम है यह ए_टी_एम चौबीस घंटे खुला रहता है।

एक आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा है ए_टी_एम एक बिल्डिंग के अंदर स्थित है।

पेटो और बक्सों में रखा गया है कुछ आम हरे हैं और कुछ पीले हैं।

बिल्डिंग में बालकनी भी दिख रही है कई दुकानों के लिए अलग अलग बोर्ड लगे हैं।

और मौजूद है कुछ लोग निमार्ण स्थल पर काम कर रहे है ऐसा लगता है कि निमार्ण अभी भी अधूरा--

ऐसा लगता है की पुल का उपयोग रोकने के लिए बैरिकेड लगा गया है।

वे बंद है बिल्डिंग के बाहर लटकते तार दिखाई दे रहे हैं बाय थ्री गेट सेवन जैसा--

बिजली के खंभे और तार दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग दोपहरिया वाहनों --

एक व्यक्ति चट्टानों पर पे खड़ा होकर इमेज का--

आनंद ले रहा है पानी की धाराएं चट्टानों पर गिरकर सुंदर प्रभाव बना रही हैं।

बैकग्राउंड में झूले और खुला मैदान दिख रहा है दाएं ओर काउंटर --

एक दीवार में बना हुआ रंगीन सेल्फ है इसमें अलग अलग खेलों की वस्तुएं रखी गई हैं।

बिल्डिंग्स हैं जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी दिखती हैं मॉडल में अन्य छोटी बिल्डिंग्स भी हैं।

बाई और बड़ी पिलर है तो छत --

यह इमेज दिन के समय ली गई है तस्वीर की गुणवत्ता अच्छी --

कमरे में कई टेबल है जिनमें ये प्रत्येक पर चार कुर्सियां है।

यहां सुरक्षा का ध्यान रखा गया है आसपास हरे भरे पेड़ हैं।